इस पिक्चर में हमें एक आइसक्रीम कैफे नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में हमें पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।

पर एक जानवर का स्टैच्यू भी है।

इस चित्र में मुझे किसी तालाब का दृश्य दिखाई दे रहा है जो कि--

इस पिक्चर में हमें एक गेट नजर आ रहा है।

यहां पर बहुत सारे लोग हैं बहुत से आदमी भी हैं औरतें भी हैं बच्चे और बूढ़े भी हैं।

इस चित्र में किसी नदी या तालाब का दृश्य नजर आ रहा है।

इस चित्र में मुझे बहुत सारी गाड़ियांए दिखाई दे रही हैं।

बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

डी_बी मॉल दिखाई दे रहा है।

पेड़ लगे हुए हैं।

तस्वीर में मुझे किसी--

मिस्ट्री के बाहर ही एक वैन खड़ी है।

इसमें एक बेड रखा हुआ है।

यहां का दृश्य सूखा है।

इस चित्र में मुझे बहुत बड़ा खुला मैदान दिखाई दे रहा है।

से पेड़ पौधे लगे हुए है।

इस चित्र में मुझे डूबता सूरज दिखाई दे रहा--

और बहुत बड़ा खेल--

इस चित्र में मुझे ज्वेलर्स की शॉप दिखाई दे रही है।